इसमे मुझे एक केमेरा नजर आ रहा है और मुझे इसमे एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसपर कुछ लिखा हुआ--

यह फोटो मुझे दिन के समय का दिखाई दे रहा है एस फोटो में मुझे खिड़की नजर आ रही है जिसमे से रोशनी आ रही है मुझे कुछ लाइट दिखाई दे रही है व्हाइट कलर की।

ये फोटो दिन के समय का दिखाई दे रहा है फोटो मे कुछ लोग दिखाई दे रहे है ये मुझे गार्डन दिखाई दे रहा हैं। इसमे मुझे--

और उसमे मुझे कुछ पौधे और कुछ ग्रास नजर आ रही है| इसमे मुझे कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और पेड़ दिखाई दे रहे हैं | हरे कलर के कुछ टावर्स नजर आ रही है।

इसमे मुझे किसी की समाधी नजर आ रही है स्टेचू बना है ग्रास नजर आ रहा है इसमे मुझे एक रोड नजर आ रहा--